विद्यालय है यह विद्यालय काफी बड़ा है यह विद्यालय काफी ऊँची भी है यहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं।

यहाँ पर गिट्टी बालू सीमेंट आदि मिलाकर लाते हैं | यहाँ पर मिस्रत्रियों से काम कर रहे हैं | यहाँ पर काफी पेड़ --

यह घर काफी आकर्षक है एवं सुन्दर है।